यह नजारा देखने में बहुत हीं अच्छा लग रहा है।

और यहाँ का बादल बहुत ठंडा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग के सामने एक साइकिल लगा हुआ है।

उस खंधे में सारे डिब्बों को रखा गया है।

यह एक बहुत बड़ी नदी है इस नदी के चारो तरफ दूर-दूर तक --

और लाइट भी जल रही है और नीचे टाइल्स भी लगा हुआ है।

और यहां पे एक सोलर लाइट लगा हुआ है और वहां पे सूर्य के परकाश भी निकला हुआ है और यहां--

एक उसके बगल में फोर --